अ देख रहा है लेकिन कोई नहीं अभी है ये मेरा बात खतम हुआ--

एक घर दिखाई दे रहा है इसमे विंडो भी है।

और दो शेर हैं उसमे सब कोई पूजा करने लिए आते हैं।

और जनक दुकान में कुछ सामान भी है लाइट भी आ गया है।

दे रही हैं और पीछे भाग अ पूरा मैदान खाली बस।

दो चार आदमी बैठा हुआ है और--

एलआईसी ऑफिस है और एलआईसी के ऑफिस में--

घर है दो तला घर है घर के नीचे एक दुकान लगाया हुआ है दुकान में बहुत सारा।

चीज रखा हुआ है लेकिन खरीदने के लिए कोई नहीं आई है अभी तक--

कलरफूल भी है बहोत सारा रंग बिरंगी फूलदानी रखा हुआ है।

सब देख खेल देखने के लिए खड़ा हुआ हैं और।

ऑटो भी खड़ी हुई है और आदमी लोग सब बातचीत कर रही है।

सुंदर लग रहा है और बीच है।

फूलों का दुकान हैं दुकान में कोई खरीदने के लिए खड़ा हुआ हैं सामने।

सामने कार्टून भी रखा हुआ हैं बहुत रंग बिरंगा फूल रखा हुआ हैं।

तीन चार आदमी दवा खेल रही है --

अंगूठी इधर से उधर चला रही है या बातचीत भी कर रही हे सामने टेबल दिखाई दे रही है।